बधाई हो कृपया बैठ जाइये
anita आपका पिछला अपॉइंटमेंट कब था
लगभग 2 महीने पहले
अभी मैं गर्भावस्था के चौथे महीने में हूँ
गर्भावस्था की स्थिति में नियमित जाँच ज़रूरी है
गर्भावस्था के दौरान परीक्षण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक सुरक्षात्मक देखभाल है
यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करने में सहायक होगी
परीक्षणों की आवृत्ति हर 3 महीने में होनी चाहिए और यह गर्भावस्था के आखिरी महीने में साप्ताहिक होनी चाहिए
परीक्षण निम्न के बारे में जानकारी देते हैं
माता के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन
जन्म से पहले का पोषण और आहार
vitamins और
जैविक परिवर्तन
यह मेरे लिए पहली बार है और मैं इस सबके लिए नयी हूँ
मेरी और बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए कृपया मुझे सलाह दें
prenatal health care यानि जन्म से पूर्व स्वास्थ देखभाल के spoken tutorial में आपका स्वागत है
यहाँ हम गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ की स्वास्थ सम्बन्धी देखभाल के care में बात करेंगे
माँ का स्वास्थ पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है
इसलिए iron की कमी की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण है
गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ को iron युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए
गर्भावस्था के दौरान शरीर में ज़्यादा खून की ज़रुरत होती है
अपने बच्चे की अतिरिक्त ज़रुरत के अनुसार hemoglobin बनने के लिए आपको ज़्यादा iron लेने की आवश्यकता है
इसलिए आपको iron युक्त भोजन लेना चाहिए जैसे
हरी सब्ज़ियाँ
अंडे की जर्दी
सूखा मेवा
फलियां और
आयरन युक्त अनाज
सीज़ेरियन delivery में बहुत खतरे होते हैं जैसे
चीरे के स्थान पर संक्रमण और
खून की कमी जो anemia का कारण हो सकता है
गर्भवती महिलाओं के लिए normal delivery की कोशिश करनी चाहिए
यह उचित डिलिवरी से पहले की देखभाल और स्वस्थ भोजन लेने से ही संभव है
अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए ठीक से व्यायाम करना महत्वपूर्ण है
व्यायाम से पीठ की समस्या में आराम मिलता है कब्ज़ कम होता है और तनाव से भी छुटकारा मिलता है
यह machine क्या करती है
यह sonography machine है
यह बच्चे के स्वास्थ और विकास का निरीक्षण करने में उपयोग होती है
anita लेट जाओ ताकि मैं sonography के महत्व को प्रदर्शित कर सकूँ
आमतौर पर sonography गर्भावस्था के 20 सप्ताह पर किया जाता है
सोनोग्राफी का उपयोग निम्न का पता लगाने में होता है
यदि गर्भनाल स्वस्थ है और
बच्चा गर्भाशय में ठीक तरह से बढ़ रहा है या नहीं
यह बच्चे के जन्म के समय कम वजन जैसी गंभीर समस्यायों का पता लगाने में मदद करती है
यह एक हद तक गर्भपात और गर्भपात से बचाने में भी मदद करती है
गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं
नियमित रूप से परीक्षण
sonography का महत्व
iron की कमी से रोकथाम और अच्छा पोषण
सीज़ेरियन जन्म पर जानकारी
व्यायाम का महत्व
धन्यवाद doctor इतनी जानकारी देने के लिए हम आपके निर्देशों का पालन करने का वादा करते हैं
गर्भावस्था के दौरान अच्छी देखभाल के लिए मैं आप दोनों पर गर्व करती हूँ
इसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ और खुश हैं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
सुनने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें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
अच्छी bandwidth न मिलाने पर आप इसे download करके देख सकते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद